और हाथी का जैसा दोनों तरफ साइड में लगा हुआ है।

गेट पर बहुते रंग हई देखे मैं तो अच्छा लग हई।

पोल में पोल घेरा हुआ है ताकि आदमी सब गिरे ना।

बाकियों का रिश्तेदार होएते दोस्त होएते।

और यहाँ बहुत ही बैलून सब से सजा हुआ हैं।

मछली बहोत खाये में मजा आवे है।

ई स्टेट बैंक है और ए.टी.एम. भी है।

अमरुद का गाछ है अमरुद है।

और चारा खा हई। चारा में का घास दारा भूसा पानी मिला कर के गाय को खिलावा हई।

हीया बहुते सब आदमी बैठे हुआ है।

ऊपर आदमी हैं और आदमी सब दुकान मैं आवा हई जा हई।

आदमी सब सामान-उमान खरीद --